यहाँ पे पानी फ़िल्टर भी एक दिखाई दे रहे है जोकि पिंक कलर की हम उसके आगे- पीछे में बोहोत सारे से शीशे भी लगे हुए है जिसमें आदमी अपना चेहरा देखने का भी कार्य कर रहे है जोकि काफी --

हम सभी आदमी बसों में चढ़ रहे हैं। कुछ आदमी यहां पर खड़े होके बस स्टैंड की बाहर की ओर जा रहे हैं। उन कुछ आदमी इधर उधर भी घूम रहे हैं। उन कुछ आदमी दुकानों की ओर --